खड़े हैं और यहां पर अलग अलग तरह के समान को रखा गया है साथ में यहां पर बहुत सारे अलग अलग--

इस फोटो पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं साथ में यहां पर बहुत सी दुकानें है यहां पर ऐसा लग रहा तरह के लोग बैठे हुए हैं।

लोग खड़े हुए हैं यहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं साथ में यहां पर बहुत से लोग--

यहां पास एक गमला रखा हुआ है। यहां पर चारों ओर किताबे रखी हुई है।

यहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं साथ मे यहां पर बहोत सारे अलग अलग तरह की फोटो लगी हुई हैं।

फोटो में मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं साथ में यहां कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सा यहां प बहोत सारे पंखे अ लाइट लगी हुई हैं।

ग्लास लगे हुए हैं यहां पर बहुत सारे बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं और यहां पर बहुत सारी टेबल रखी हुई हैं चारों ओर कैमरे और पंखे ल् --

इस फोटो में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है साथ में यहां पर बहोत सारी मशीनें रखी हुईं हैं यहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुएं हैं।

यहां पास कांच की गिलास लगाए गए हैं।

एक चादर बिछा हुआ है साथ में यहां पर बहोत सारे बल्ब और कैमरे --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

यहां पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं साथ में यहां पर बहोत सारे लोग बाहेर बैठे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे ट्रक दिखाई दे रहे है साथ में यहां पर बहोत सारी वैन और बस खड़ी हुई है।

बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे घास के गमले रखे हुए हैं साथ में यहां पास बहोत सी दुकानें हैं दुकानों के बाहर साइड बहोत सारे--

और दुकानें बनी हुई हैं यहां पास बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और यहां पास बहोत सारे सामनों को बाहर रखा गया है यहां पास बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।